इस फोटो में एक साइड में गार्डन है और साइड में घर है जिसके बीच से कार आ रही है।

इस कार के पीछे बच्चे खेल रहे भी हैं साइड में बहुत सारे घर भी है।

इस फोटो में एक हॉल है जो की डेकोरेट किया गया है।

नीचे में ग्रीन ग्रीन कलर का बीच में बैठाया गया साइड में ब्लू कलर का बिछाया गया है।

इस फोटो में एक पेट्रोल पंप का है जो कि पेट्रोल पंप में एक कार तेल ले रही है।

काउंटर पे दो आदमी खड़े हुए--

लोहे के जो चदरे की अलमारी आते हैं वो भी बाहर में रखे हुए--

अंदर में बहुत सारी तरह तरह के बाल्टी ड्रम सेट कुकर है।

बैनर लगा वो ग्रीन कलर का है।

अ पलंग पर गद्दे भी लगाए हुए हैं जो कि सेट है।

जो की पांच छे वैरायटी के हैं।

के बगल में व्हाइट कलर के ए_सी भी रखे हुए--

इस फोटो में मछली को रखने वाला बॉक्स बनाया है जो की शीशा का --

एम_आर_पी के कंपनी का भी है कुछ कोई वाइट कलर का डब्बा है कोई ग्रीन कलर का डब्बा है कोई ब्लैक कलर का डब्बा है।

प्लाईबोर्ड खिड़की के पास साइड पे रखा हुआ--

दुकान में भी एक सीढी रखा हुआ है जोकि सामने में भी खड़ा किया गया--

इस फोटो में कुछ इलेक्ट्रिक के सामान रखे हुए हैं जैसे कि स्विच फैन हो गया इलेक्ट्रिक के सारे सामान।

इस फोटो में कुछ कपड़े टांगें हुए हैं जो कि फ्रॉक है सूट है सलवार है।

नल वाला जार है जो की ब्लैक एंड ग्रीन कलर का है।

होटल के बाहर खड़ा हुआ है और होटल जो बादल लाइन होटल के बाहर खड़ा हुआ है।

इस फोटो में एक प्लेट है।

दो नांव नदी में लगे हुए है किनारे एक नाव को उल्टे किये है।

स्टेशन का जो सामने प्लेटफार्म का जो कलर है ओ येलो कलर का रेड कलर का है सामने कुछ व्हाइट कलर का है।

जैसे कि गोभी रखे हुए हैं गाजर रखे हुए हैं नींबू रखे हुए हैं बैगन रखे हुए हैं आलू रखे हुए हैं लहसुन रखे हुए हैं प्याज रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक बड़ा सा महल टाइप में है जो की हरा भरा है पूरा पूरा गार्डन टाइप में भी है सामने में एक आदमी खड़ा भी हुआ है।

वो कुछ काम कर रहे हैं मिस्त्री।

उसके बगल में थोड़ा सा मैदान टाइप में है घास ये सब भी जमा हुआ है फील्ड टाइप ।